एक कार को आगे से पूरा खोल रखा है।

याय बस स्टैंड में काफी बसेस खड़े है।

ये कीड़े काफी बड़े मे है।

ये पैलेस में डी_जे चल रहा है।

काफी व्हाइट कलर के कबूतर पड़े हैं एक कबूतर--

इस मंदिर के बाहर लोगों की काफी भीड़ है।

यहां बच्चों के लिए काफी टॉयज --

नीचे मैट भी लगाया हुआ है।

ये छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नगर पंचायत--

ये मंदिर की तस्वीर है।

तरह के फूल खिले हुए हैं इनमें।